ये एक विद्यालय का दृश्य है यहां सामने कुछ गमले रखे हुए हैं गमलों में--

उसमें ऊपर कमरे दिख रहे हैं।

और आसपास पाइपों से चारदिवारी हुई है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और कुछ बच्चे दौड़ते हुए रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल समान की शॉप है यहां कुछ वॉशिंग मशीनें दिखाई दे रही--

उसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक कैंडिस और--